सामने मुझे बहुत ही अच्छा खूबसूरत तस्वीर नजर आ रहा है।

उल्टे-पुल्टे कुछ गेम खेल रहे हैं ऐसा लगता है कोई गेम खेल रहे हैं एक नीचे बिल्डिंग दिखाई दे रही है कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं टीचर --

पंखे दिखाई दे रहे है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का समान बेचा जाता है इस दुकान में बहुत ही प्यारा--

पीछे जिम का सामान पड़ा हुआ है जिम ट्रेनर लगता है बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है बहुत ही प्यारा दृश्य देखने को मिल रहा है।

इसमें कुछ सब्जियां पड़ी हुई दिखाई दे रही है एक सब्जियों की दुकान दिखाई दे रही है सब्जियां अलग अलग प्रकार की सब्जियां दिखाई दे रही है बहोत ही प्यारी और सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा बहोत ही प्यारी --

मुझे सामने एक बहोत खूबसूरत वो अच्छी सी सुंदर सी दिखाई दे रही है उसमें सुंदर सी तस्वीर मे दिखा है वो --

पीले कलर की साड़ी में कुछ सा दिखाई दे रहा है बहोत अच्छा सुंदर तस्वीर देखने को मिल रहा है बहोत ही सुंदर दृश्य --

सामने एक मुझे तस्वीर दिखाई दे रही है तस्वीर में एक खूबसूरत सा दृश्य दिखाई दे रहा है दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है बहुत प्यारा दृश्य देखने को मिल रहा है।

सामने ये बहुत अच्छी सी सुंदर तस्वीर दिखाई दे रही है तस्वीर में कुछ दृश्य दिखाया गया है वह दृश्य दिख रहा है बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है।

बिल्डिंग कोलाइता कोलाइत करके कुछ दिखाया गया है जिसमें कुछ सीढ़ियां लगाई हुई हैं सीढ़ियों पे आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहें --

तस्वीर देख रही है बहुत ही अच्छी सुंदर तस्वीर देखने को मिल रही है बहोत ही अच्छा दृश्य देखने को नसीब हो रहा बहोत प्यार दृश्य दिखाया गया।

एक हॉल की तस्वीर दिखाई गई है जिसमें एक आदमी टेबल पे पैर रख के बैठा हुआ दिखाई दे रहा है एक पेंटिंग दिखाई दे रही है ऊपर जुम्मा लगा हुआ है जिसमें --

एक स्टेज लगाया हुआ है स्टेज बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है स्टेज में भगवान की तस्वीर दिखाई गई है।

सामने पड़ा मुझे एक खूबसूरत सा दृश्य नजर आ रहा है दृश्य बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है बहोत प्यारा दृश्य देखने को मिल रहा है बहोत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है।

तस्वीर दिखाई दे रही है एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है हाल में कुछ पोस्टर लगे है वो दिखाई दे रहे हॉल को सजाया गया --

सामने मुझे एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है इधर से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है बहुत प्यारा और अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है।